ये एक तालाब की तस्वीर है। जिसके बाजू में बहुत सारी सीढ़ियाँ लगी है। यहां पर बहुत सारी घास लगी हुई है। तालाब के पीछे साइड मे बहुत सारे पेड़ लगे हुए --

एक होटल की तस्वीर हैं जहाँ पर एक टेबल के ऊपर खाना रखा हुआ है खाने में यहाँ पर एक प्लेट रखी हुई है।

यह एक चौराहा की फ़ोटो है यहाँ पर एक चबूतरा बना हुया है चबूतरे के अन्दर घास फूस लगी हुई है और सुंदर- सुंदर से फूल लगे हुये--

यहाँ पर ऊपर एक बड़ी सी बिल्डिंग भी बनी है यहाँ पर स्विमिंग पूल के बाहर बोहोत सारा समान रखा हुआ है जो कि खाने- पीने का हैं और यहाँ पर पानी भरा हुआ है।